यहां पे बहुत सारे कुर्सियां मेंज पड़ी हुई हैं।

हमें इस फोटो में किसी शॉप का दृश्य दिखाया गया है।

टेबल पर बहुत सारा डिब्बे में समान रखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे बच्चे नेशनल एंथम कर रहे हैं।

लगी हुई है पीछे का ग्राउंड ब्लैक कलर का नजर आ रहा है।

हमें इस फोटो में दो लड़की सेल्फी लेते हुए नज़र आ रही हैं।

पीछे सिटी कैफे लिखा हुआ है।

एक सफेद कलर का काउंटर नजर आ रहा है।

हमें इस फोटो में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

सामने की तरफ कांच का एक दरवाजा लगा हुआ है।

नंगे पैर हैं पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक कलर का नजर आ रहा है।

उस दुकान के बाहर एक यूनिवर्सल बुक सेलर्स का बैनर भी लगा हुआ है।

और उसके बाद में एक प्लांट भी लगा हुआ है।

पीछे के साइड ग्रिल भी लगी हुई है।

उसके बाद पीछे रोड पर कुछ लोग चलते हुए नजर आ रहे है।

जैसे चॉकलेट बिस्किट मैगी टॉफी रखी हुई हैं।

इस पर बहुत लोग बैठे हुए हैं।